इस दुकान पे इनो और काफी चिप्स दिखाई दे रहे हैं एक तराजू भी आगे लटका हुआ है और कुछ जुट के बोरे भी दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर कुछ अखबार रखे गए हैं।

जिसमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे बच्चों के जैसे घर बनाए गए हैं जो कि हरे और आसमानी रंग के हैं और किनारे एक बैठने का कुछ छोटा सा र दिखाई दे रहा है।

यह रेलवे पटरी का चित्र है मानो कोई स्टेशन हो यहां से एक रेलगाड़ी गुजर रही है और स्टेशन पे एक महिला और उसके आगे एक आदमी जा रहे हैं एक स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहा है जिसके किनारे दो तीन पेड़ और एक घर भी है।

यह एक बिजली घर जैसा दिखाई दे रहा है जिसके बाहर तीन-चार ट्रांसफॉर्मर और कुछ तार हैं और अंदर एक गाड़ी खड़ी है एक छोटा सा लोहे का गेट और कुछ सीमेंट वाले ईंटे नीचे बिछे हुए हैं उसके ऊपर एक लोहे की तार का जाली बना हुआ है जिससे लोग अंदर बाहर न जा आ सके।

यह एक पीले रंग का घर है जो जिसमें पुताई चल रही है और एक बाहर की ओर सीडी है एक लड़की बगल से जा रही है जिसका और इस घर का गेट हरे और सफेद रंग का है। खिड़कियों पर भी जाली लगी और साइड में प्लास्टर नहीं हुआ है।

यह कोई प्रोग्राम का तस्वीर है जिसमें पियानो और तबला वादक है मौजूद और कुछ लोग उनके पीछे खड़े हैं एक आदमी सफेद कुर्ते में खड़ा है और एक महिला येलो पीले रंग के कपड़ा पहना हुआ है और वादक हो रहा है।

यह किसी फंक्शन का फोटो लग रहा है जिसमें पीछे डी_जे लाइट और डी_जे लगा हुआ है और डांस बार भी बना हुआ है एक मेज भी साइड में नीले रंग की है जिसके उपर छतरी और औरेंज रंग का गुब्बारा लगा हुआ है।